एक बड़ी-सी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं और दरवाजे हैं ये सामने बिल्डिंग के दो लोग हैं एक गाड़ी पे है एक चल रहा है उसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है टूटी हुई गाड़ियाँ खड़ी हैं।

पीछे की तरफ एक मूर्ति है कुछ सजा हुआ है हरे और अलग-अलग अवतारों मे कुछ चीजें सजी हुई है।